और पीछे एक कार दिख रही है पीछे एक खंबा भी दिख रहा है यहाँ पर रोड है यहाँ पर् ऐसा लगता है जैसे बस स्टैन्ड है बसों से हमें कही का कहीं भी अगर हमें जाना पड़ता है तो हम वहाँ तक जाने के लिए सफर तय करते है और आराम से वहाँ पहुचते है।

जाली बनी हुई है जाली के नीचे थोड़ा पानी दिखाई दे रहा हैं लेकीन इसमें अंधेरा सा दिखाई दे रहा है सूरज की किरने बहोत तेज पानी में गल रही हैं और अच्छी तरह से दिख नही रहा है।